जिसमे एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के सामने क्यारी दिख रही हैं।

जिसमे एक गेट दिख रहा है जो ब्लू कलर से पेंटिड है उसके ऊपर एक लौंड्री का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो एक लॉन्डरी की दुकान की अंदर की है यहां पर हमे तीन आदमी दिख रहे है जिनमे से एक टेबल पर बैठा हैं तो वही दूसरा हाथ मे सर्ट लिए खड़ा है।

और एक टेबल जिसके ऊपर दो बोतल और एक जग रखा हुआ है रूम में नीचे फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई है।

जिस मे एक जगह का कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उसका गेट लोहे का है और ब्राउन कलर से पैंटटेड है।

इस घर के अंदर के गेट दिख रहे है और यहां पे कुछ अलमारी भी रखी हुई हैं।

ये एक टुरिस्ट स्पोट पे खड़ी एक टुरिस्ट बस की है जो व्हाइट और ऑरेंज कलर की है।

'' यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक मेंस वियर की दुकान की है। ''